और नीचे साइड मे भी प्लाई रखी हुई है साइड मे खिड़की दिख रखी हुई है।

कुछ लोग खड़े हुए है कुछ लोग बैठे हुए है हाथ मे--

बोट दिख रखी है ऑटो दिख रही है ऑटो मे दो लोग बैैैठे दिख रहे है आइट साइड हर्रियाली दिख रही हैँ एक गर्दन द्वारका दरवाज़ा दिख रहा हैँ।

महिलाएं दिख रही है महिलाओं ने मेहरून कलर का कपड़ा पहने है जेंट्स ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने है ट्यूबलाइट दिख रही है एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है।

जहां एक बड़ा सा टीम का स्टोर है जिसमें एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसका कलर हरे कलर का डाला है।

और सब लोग महिलाएं जेंट्स तालाबों में हैं और सामने साइड एक झाड़ हैँ झाड़ के बाजू मे हलका सा आसमान दिख रहा है थोड़ा सा डेकोरेट हुआ है।

झाड़ के नीचे का जो कलर है वो गमले का ब्लू कलर का है ग्रीन कलर का झाड़ है और बच्चे हाथ हाथों मे फेविकोल लिए बैठे है।

और ए.टी.एम के पीछे जस्ट एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ लड़किया दिख रही है डांसप्रैक्टिस चल रही है नीचे साइड एक प्लैट रखी हुई है कुछ टिश्यू पेपर डले हुए हैं एक स्पीकर रखा हुआ है और सामने साइड एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है ऊपर ट्यूब लाइट दिख रही है।